और सड़क के बीच में हमें हरे-हरे पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

अ एक मूर्ति लगी हुई दिखाई दे रही है।

और हमें बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है जिसके उस तरफ पेड़ लगे हैं।

सामने मूर्ति भगवान की रखी हुई है।

और पेड़ लगे हुए हैं और मिट्टी पड़ी हुई है।

एक लकड़ी का काउंटर बना हुआ नजर आ रहा है।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

सोफे पर और कुर्सियां सोफे की ओर टेबल लगा हुआ है।

और हमें एक कार का कांच हमें दिखाई दे रहा है मिरर एक गाड़ी का --

बाइक का बाइक खड़ी हुई है और उसका हमें कांच दिखाई दे रहा है।

और एक सड़क पर हमें दोनों तरफ गाड़ियां और लोग आते- जाते--

जिस पर सिक्स मील लिखा हुआ हैं।

और जिसके ऊपर बहुत सारी हमें तस्वीरें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

बाइक खड़ी हुई है और हमें एक आदमी भी बैठा नजर आ रहा है।

और गाय हमेंअअ घास खाती हुई दिखाई दे रही है।

दूर दूर तक हरियाली और पेड़ नजर आ रहे हैं।

गुलाबी रंग का अअ ये बोर्ड है।

और उन आदमियों ने सर पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं।

सूना ये रोड हमें कच्चा दिखाई दे रहा है आस पास--

और उसे आदमी अअकलर कर रहा है।

हमें इस तस्वीर के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हुई अलमारियों के अंदर जमी दिखाई दे रही हैं।

हमें शाइन ऑफ एम_पी लिखा हुआ ग्रीन सर्फर लिखा हुआदिखाई दे रहा है बोर्ड पर--

और हमें नीचे दवाइयां लिखा हुआ और एस_बि_आई का ए_टी_एम बना हुआ नजर आ रहा है।

हमें वर्क लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और बनियान और लोवर में--

हमें लोहे की जाली बनी हुई दिखाई दे रही है और जाली के उस तरफ--

दो आदमी आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूर तक कच्चा ये हमें रास्ता--

सूरज दिखाई दे रहा है और एक बाइक हमें खड़ी हुई नजर आ रही --

कुछ पेड़ में पत्ते हैं कुछ में नहीं है।